लोवर पहना हुआ है।

किसी स्टेशनरी है यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है जिसने डार्क कलर का शर्ट पहना हुआ है किसी समान को किसी कपड़े से ढक दिया है।

किसी बहोत बड़ी बिल्डिंग की तस्वीरें है जहाँ पे रंग-बिरंगा लाइट लगी हुई है नीले रंग का सफेद रंग का और पिंक कलर का लाइट लगा हुआ है तथा हरे रंग का भी लाइट लगा है।

किसी किताब घर की तस्वीर है जहां पे खुब भीड़ है ऊपर एक स्टार लगा हुआ है लाइट लगा हुआ है ऊपर का रंग हरा है।

किसी मंदिर की तस्वीर है जहाँ मंदिर का घंटा दिख रहा गेंदे के फुल का माला दिख रहा लाल रंग के कुर्ते पहने हुए कई लड़के हैं।